ये डी.जे. की गाड़ी है जो शादी विवाह में डी.जे. यूज किया जाता है | जिसमें --

एक साइड मे चेयर भी लगा है टेबुल भी है ।

कही जाने के लिए यूस किया जाता है | इसमे तीन पहिया है आगे तीन लाइट भी लगा हुआ है ।

टीचर भी खड़े हैं जो --

बच्चे सब पढा रहे है ।

और खाना बनाने के लिए जितना मटेरियल यूज़ होता है वो सारे साइड में रखे हुए हैं ऊपर।

बहुत सारा बड़ा घर है जहॉ दो बत्तख --

में घूम रहे हैं साइड में पार्क भी है बड़ी बना हुआ है बाउंड्री यहाँ पर |